उसके पीछे एक पहाड़ नजर आ रहा है।

उसमें बहोत सारी लाइट लगी हैं।

मुझे एक हाउस नजर आ रहा है।